यहाँ वृक्ष भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिजलीओं के खंभे भी लगे हुए हैं देखा जाए की अच्छे हैं पीले हैं और लाल हैं और गेंदा टाइप के फुल लग रहे हैं।

यहाँ पर सफेद और वहाँ पर कुछ माला रखी हुई हैं कर्रेंटें में जो अच्छी लग रही हैं देखने मे बहुत अच्छी माला वो गेंदा टाइप की दिखाई दे रही हैं वहाँ कर्रेंटें में रखी हुई दिखाई दे रही हैं पोस्टर भी लगा हुआ हैं।

हमे अमरुद सेव केले लग रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ताजे ताजे फल फुलाई हैं।